ये एक टेम्पल है और यहा पे सीढ़ी है और इसके नीचे हैचे चौताल जैसा बना हुआ है जिसमे लोग बेठे हुए हैं और बहुत सारा लैम्प वगेरा लगा हुआ है। यहा--

सामने कबर्ड है और कबर्ड के बगल में ड्रेसिंग टेबल है।

ये इवनिंग का टाइम हैं जहां सूरज सन सन राइज और सन --

मॉल का है जहाँ म्म ट्रॉली रखा है ट्रॉली में कुछ सामान है और सामने कुछ सामान पैक किया हुआ रखा हुआ है कुछ शैल में रखा हुआ है सामान--

जिसमें ग्रीन ग्रीन ग्रास है पानी है और बोगला है फिर --

ब्लैक कलर

गमला है इसमे सिंगी मछली है सिंगी मछली का मूंछ निकला हुआ है एक बंदा उसको पकड़ के है गमला को और सब मछली जींदा है।

फूल हैं बहुत सारे गेंदा के के फूल है उसमे बीच में एक रोज़ का फूल है नीचे का डंठल उसका ग्रनी है और ये डैकोरेशन के काम आता है गेंदा का फुल।